इस चित्र में हम एक बिल्डिंग देख रहे हैं बिल्डिंग सफेद कलर की दिख रही है बिल्डिंग के ऊपर जनता बुक रिपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है।

दुकानदार के द्वारा कान में एक रुमाल भी ओड़ा हुआ है व जैकेट पहना हुआ है दुकान के सामने बहुत सारे फूल भी बिखरे हुए हैं।

बाहर साइड भी पन्नी में उसने बंद फूल को पैकेट में रखे हुए हैं।

ऊपर से भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड भी दिख रहा है दीवाल में और सारे कई विज्ञापन के बोर्ड दिख रहे हैं। सूचना पटल भी दिख रही है।

एक पैर हल्का सा जमीन में लगा हुआ है दूसरा पैर हवा में लटका हुआ है लड़के ने सफेद शर्ट और----

सामने से पीली कलर की सूरज की रोशनी भवन के रोड पर पड़ रही है रोड में टाइल्स लगी हुई है।

इस चित्र में हम एक भवन को देख रहे हैं भवन के बाहर लाइब्रेरी लिखा हुआ है बाहर रेलिंग स्टील की लगी हुई है घरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इस चित्र में हम एक मीटिंग हॉल को देख रहे हैं यहां पर बहुत बड़ा काउंटर बना हुआ है पीछे बहुत सारे कंप्यूटर भी रखे हुए हैं बीच में एक आदमी हाथ में हाथ रखे हुए बैठा है।

यहां पर बालकोट एयर साइंस स्टेटनर लिखा हुआ है।

ऊपर नीला आसमान दिख रहा है चारों साइड हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं बीच में कुछ लाल भी दिख रहे हैं।

किनारे साइड बहुत सारे आदमी भी दिख रहे हैं बीच में फूल माला लगा हुआ है ऊपर टीन का सेट दिख रहा है।

अलमारी के पीछे भी जमीन में बहुत सारी गड्डी लगा के बुक रखी हुई हैं ऊपर पंखा भी दिख रहा है ऊपर साइड लाल कलर की पाइपें भी लगी हुई है।

और बिजली के ट्रांसफार्मर दिख रहे हैं छत के ऊपर पीले कलर की पानी टंकी दिख रही है वहां एक बूढ़ा आदमी सफेद कलर का कपड़ा पहने हुए आगे बढ़ रहा है।

इस चित्र में कुछ इंग्लिश शब्दों से लिखा हुआ शब्द दिख रहा है ऊपर चार प्रकार के कुछ पोस्टर भी दिख रहे हैं।

किनारे साइड मोटरसाइकिल दिख रही है उसके बगल में बिजली के खंभे दिख रहे हैं उसके बगल में कुछ पेड़ में लगे हुए गमले भी दिख रहे है।

बाइक में जा रहे हैं औरत भी हेलमेट पहनी है आदमी भी हेलमेट पहना हुआ है किनारे साइड रोड भी दिख रही है।